एक खेत दिखाई दे रहा है इसपे कुछ फसल दिखाई दे रही है जोकि हरी और ब्राउन कलर की भी दिखाई दे रही है कुछ पेड़ भी नज़र आ रहे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा हैं।

यह एक घर दिखाई दे रहा है जो कि कुछ चीज से ठहरा हुआ है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे है एक साइड मुह करके सारे के सारे लोग बेठे हुए है।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है बड़े- बड़े जिनकी पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं।

गार्डन दिखाई दे रहा है जहाँ बहोत सारे पेड़ है कुछ खजूर के पेड़ है कुछ अन्य पेड़ भी है कुछ छोटे -छोटे पेड़ भी है और बहोत बड़े -बड़े झाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बॉर्डर भी दिखाई दे रही है बाउंड्री दिखाई दे रही है बाउंड्री में कुछ खिड़कियाँ भी बनी हुई है।

एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें एक रास्ता भी बना है बीच -बीच में घास लगी हुुई है पूरे गार्डन में घास लगी हुई है मैदान में कुछ छोटे- छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ गमले दिखाई दे रहे है जिनमें छोटे -छोटे बड़े -बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।